दिखाई दे रही है शॉप काफी बड़ी नज़र आ रही है शॉप के बाहर कोल्ड ड्रिंक की ट्रे रखी हुई है जिसमे काफी सारी कोल्ड ड्रिंक दिखाई दे रहे है।

गार्डन मे काफी सारे पेड़ पौधे दिखाई दे रहे है यहां पर काफी सारे पेड़ बड़े दिखाई दे रहा है यहा पर कई प्रकार के पेड़ नज़र आ रहे है पेड़ काफी बड़े दिखाई दे रहा है।

यहा पर कुछ गमले नज़र आ रहे है पीछे एक बिल्डिंग दिखाई दे रही बिल्डिंग का कलर सफेद दिखाई दे रहा है इसमे कुछ खिड़किया नज़र आ रही ऊपर कुछ लाइट दिखाई दे रही है यहा पे कुछ लोग दिखाई दे रहे है।

गार्डन नजर आ रहा है गार्डन में एक बच्चा दिखाई दे रहा है बच्चा पेड़ो में पानी डालते हुए नज़र आ रहा है पीछे एक बिल्डिंग दिखाई दे रही है बिल्डिंग का कलर सफेद दिखाई दे रहा है।

काफी सारी बिल्डिंगे दिखाई दे रही हैं यहा पे काफी सारे पेड़ नज़र आ रहे हैं यहा पे काफी सारी गाड़ियां नज़र आ रही हैं यहा पे काफी सारी दुकाने दिखाई दे रही हैं गाड़ियां जाती हुई दिखाई दे रही हैं।

एक बिल्डिंग दिखाई दे रही है बिल्डिंग किसी स्कूल की नज़र आ रही है बिल्डिंग का कलर सफ़ेद दिखाई दे रहा है बिल्डिंग को अच्छे से डिज़ाइन किया गया है बिल्डिंग के सामने एक गार्डन बनाया गया है गार्डन में काफी सारे पेड़ लगाए गए हैं यहां पर एक स्टैच्चू दिखाई दे रही है।

यहा पे एक मूर्ति नजर आ रही है यहा पे काफी सारे पेड़ हरे भरे दिखाई दे रहे हैं पेड़ काफी लम्बे नज़र आ रहे है सामने एक बच्चा दिखाई दे रहा है बच्चे ने बैग टांगा हुआ है।

दिखाई दे रही है ये शॉप काफी बड़ी दिखाई दे रही है शॉप किसी मॉल की नज़र आ रही है यहा पर सीलिंग पर काफी सारे लाइट लगे हुए है सीलिंग पे कुछ ए_सी नज़र आ रहे है यहा पर हर प्रकार के मक्षीया टंगी नज़र आ रही है।

चेयर का कलर ब्लैक दिखाई दे रहा है एक ए.सी. दिखाई दे रहा यहा पर काफी सारे दीवार पर एक फ़ोटो लगी हुई है फ़ोटो काफी बड़ी दिखाई दे रही है।

और एक क्लासरूम दिखाई दे रही क्लासरूम काफी बड़ी नज़र आ रही क्लासरूम मे एक बोर्ड लगा है बोर्ड काफी बड़ा दिखाई दे रहा बोर्ड बोर्ड का कलर व्हाइट दिखाई दे रहा।

यहा पे काफी सारे कलर के फूल है यहा पे मेट बिछी हुई मेट हरी कलर की दिखाई दे रही है।

दिखाई दे रहा है फूल काफ़ी खूबसूरत लग रहा है फूल की पत्तियां लाल और सफ़ेद कलर की है फूल में कुछ पत्तियां लगी हुई है पत्तियां हरे कलर की दिखाई दे रही है यहाँ पे एक डंडा नज़र आ रहा है डंडा काले कलर का दिखाई दे रहा है।